फोटो में दो बल्ले के चेयर आन दिस्ते है।

ऐनक का एक ग्लास दिस्ता है।

बाजू में एक थैला दिसता है।

ये फोटो में दो बल्ले के है।

ये फोटो में तो बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिस्ते हैं।

और शेरवानी एक कोट रखे है।

नीचे कार पार्किंग भी करके है।

वो तो ग्रीन कलर मेट पे लिख के है।

ये फोटो में तो एक मंदिर दिसता है।

मंदिर रेड एंड व्हाइट पेंट से मार के है।

एक फोटो में दो आदमीयां ठहर के हैं।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

बाजू में लॉलीपॉप दिखते है।

पैनल लाइटान दिसती हैं ऊपर फ्लोरिंग व्हाइट कलर पेंट मार के है।

गार्डन पार कर के है ओ गाड़ी के ऊपर एक आदमी ठहर के है।

बाज़ू में दो आदमी जाते हैं।

ये बिल्डिंग को रेड कलर पेंट मार के है।

ये फोटो में दो गौतम बुद्ध का विग्रहम दिसता है।

बाजू में चेयर्स रख के है टेबुल्स है टेबुल्स के ऊपर टिशू पेपर्स है।

बाजू में स्विच बोर्ड भी दिखाते हैं।

अंदर थोड़े फंक्शंस चलते हैं।

टोमाटर आलूवान दिसते हैं वो तो ब्लैक कलर रैका में रखे है।

ये तो एक कपड़ा का शॉप दिखता है।

कपड़े अलमारी में रख के हैं।

पुडे़ कपड़े हैंगिंग को रखे है।

ये फोटो में तो बहुत सुंदर झोपड़ा दिखता है वो तो अच्छा से डेकोरेटिव करके है।

बड़े फूलन के झाड़न भी दीखते हैं।

थोड़े हस्बैंड ठहर के हैं पीछे में बिल्डिंग भी दिसता है।

एक डॉक्टर स्टेटस्कोप डालने के हो।

ये फोटो में एक पार्क दिखता है।

बाजू में एक लोरी ट्रक दिखता है।

ये फोटो में तो एक स्टडी हाल दिखता है।

इसमें सब जाने एग्जामा लिखते है।

ये फोटो में थोड़े बच्चे बैठके है।

एक बोर्ड भी दिखता है।

फोटो में तो एक रोड दिसता है।

गाड़ी में दो आदमियां बैठके हैं।

बाजू में वीरवार रखे है सामने गुम्मादी का अभी फोड़ गया है।

छोटा सा घर भी दिखाता है वो तो ब्लू कलर पेंट मारके है।

ये फोटो में तो एक देवल दिसता है।

बड़े बड़े झाड़ा दिखते हैं।

फोटो में तो ब्लैक टाइल्स हैं।

यह फोटो में तो एक मंदिर दीस्ता है।

एक कपड़ा का शोरूम दिखता है।

इस चित्र में बालके बच्चे बैठ के हैं।

दो आदमी यहां को चलाते हैं।

काउंटरगने थोड़े आदमीया ठेर के है।

ये तो गिलास का दिवाल रखें है।